जो स्विमिंग वगैरह कर रहे है पानी में मस्ती कर रहे है इसके आस-पास पेड़ लगे हुए है।

बहुत बड़ी मूर्ति रखी है घोड़ों वगहरा की मूर्ति रखी हुई है जो बहुत ही ज्यादा फ्लावर्स से पेदो से डेकोरेट है इसके आगे माइक वगहरा रखे है लगे है।

एक बहुत बड़ी नदी है और उसके आस-पास पहाड़ी इलाका है और यहां पे नदी के ऊपर एक ब्रिज बना है।

यह किराने स्टोर का अंदर का है यहा बहुत सारे सामान टंगा है बहुत सारे सामने रखे है रखे है।

एक पार्क है यहा पर बहुत सारी फूलों के और पेड़ों की क्यारियां बनी है वहा पे एक आंटी है जो ग्रीन कलर की जैकेट पेहन रखी है साड़ी पे।